यह एक सड़क है और जो छोटा छोटा घास है।

यह एक गंजी है और एक बाल्टीन है और बोतल है और यह हर यहाँ खाने का भी समान है।

जोकि व बलुन में सजाया गए हैं।

और यहां एक गाड़ी है और यहां दो तीन लोग हैं।

यह एक मंदिर है लाइट से सजाए गए हैं फूलों से सजाए गए हैं यहां पर कुछ लोग हैं।

कप के अंदर में चाय है और कुछ घास है और पेड़ है और घर है बादल है।

यह पानी है कुछ गड्ढे में जमा है।

यहां एक आइसक्रीम के दुकान है।

कुछ बांस हैं और पौधे लंग हैं गिट्टी है।

यहां अम दुकान है साड़ियों के एक इंसान दिखा रहे हैं एक डायरी है।

यहां लोग हैं योगा कर रहे हैं और यहां पर ए_सी है कपड़े हैं लाइट है।

यह एक गार्डन है जो छोटे-छोटे पौधे लोग है घास है बड़े-बड़े पेड़ है।

यह एक चट्टान है छोटे-छोटे पत्थर लोग है और छोटे-छोटे पौधे लोग है पेड़ है पानी है।

यहां बहुत सारा नाव लोंग हैं और यहां पर बहुत सारा खंभे लोंग हैं झंडे लोंग हैं।

यह एक रोड है वहां गाड़ियां लोग हैं।

और लाइट लगाए हैं कैमरा लगाए हैं।

आई अन्द बाहर में कुछ बहोत सारे लोग हैं बहोत सारा गाडियां हैं।

और पानी है झरने जैसे बह रहा है।

बाहर में तीन बच्चे हैं एक बॉल है।

और पानी बेह रहा है झरना है पेड़ है बड़ा बड़ा छोटे छोटे पौधे लोन हैं।

यह खाने का सामान का दुकान है स्टोर है।